ये अपना हाथ टेबल पर रखे हुए है और पर्पल एंड व्हाइट टी शर्ट पहने--

और सभी अपना कागज़ फाड़-फाड़ के अपना-अपना काम कर रहे है सभी लोग कैंची की मदद से पेपर को काटते हुए नज़र आ रहे है।

करवा रहा है बगल में बजरंगबली का मूर्ति है।

जो मैडम व्हाइट कलर का ड्रेस पहनी हुई है।

जहाँ पे खभे है खभे मे लाइट लगा हुआ है और खभे के बगल मे पेड़ है और आटो के पीछे मे एक और आटो चलती नजर--